इस तस्वीर में मुझे कुछ चट्टान दिखाई दे रही हैं।

इस तस्वीर में मुझे तीन आदमी दिखाई दे रहे हैं।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

इस तस्वीर में मुझे एक पेड़ दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में--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

इस तस्वीर में मुझे बहोत सारा पानी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे बहोत सारे वाहन दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में मुझे एक कुछ घर दिखाई दे रहें हैं।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

इस तस्वीर में मुझे बहुत सारी सजावट दिखाई दे रही हैं।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

इस तस्वीर में मुझे दो शीशे दिखाई दे रहे हैं।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

इस तस्वीर में मुझे नयन सुख पी_एम_टी हाइट दिखाई दे रहा है।